इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें एक बैठने के लिए छतरी बनाई हुई है।

आइसक्रीम मिलती है और इसमें एक ए_सी भी लगा हुआ है।

खाने पीने का सामान मिलता है।

पेड़ पौधे लगे हैं और एक पंखा भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्वीट्स होटल दिखाई दे रहा है।

कुछ चेयर पर बैठे है और एक टीचर उन्हें दीवार पे प्रोजेक्ट पर पढ़ रहा है।